और यहां पे बाइक रखी हुई है।

यहां पे ये झाड़ियां लगी हुई है ये जोड़ है गांव का और यहां पे दिख रही है यहां पे पानी की टंकी भी दिख रही है।

ये बहोत अच्छा देख रहा है यहा पे चारो तरफ पेड़ पौधे लगे हुए है जोड़ के पास झाड़िया भी लगी हुई है।

और ये गांव के नगर के दिख रहे हैं और यहां पे जोड़ भी अच्छे--

सीनरी बहुत अच्छी दिख रही है सीनरी शीशे में दिख रही है सीनरी --

हाथी हैं ये बिल्ली हैं कबूतर हैं ऐसी ऐसी पक्षी बने हुए यहाँ पे।

हैं नहीं यहां पे ये सीनरी है यहां पे जैसे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं ऐसे यहां पे सजा रखा है।

कुर्सी भी रखी हुई है यहां पे बैग भी रखे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो झूला है यहां पे झूले झूलने के हैं।

और यहां पे देख सकते हो फोटो का कलर भी अच्छा है और डिजाइन भी अच्छा है।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

ये आदमी चुटकी भी ऐसे कर चुटकी बंद कर रहा है और यहां पे ये तितली है और फुलें दिख रहा है आपको।